कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं और यहां पर बहोत सुंदर तरीके से सजावट की गई है ।

लेडी ने व्हाइट कलर की जैकेट पहन रखी है यहां पर हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर मरीजो के लेटने के लिए कुछ बेड लगे हुए हैं।

यहाँ पर जमीन पे हरे रंग का मैट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

इमेज में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है ये कोई नदी या दरिया हो सकता है और यहाँ पानी में एक किस्ती जा रही है उस किस्ती के उपर दो लोग बैठे हुए हैं।